और यहाँ पे है यहाँ पे ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है| यहाँ की जमीन है वो थोड़ी-सी कलरफूल है।

आपको बहुत सारी एक अ बाइक दिखाई या बाइक और साईकिल दिखाई पड़ रही है यहाँ पे देखिये जो वॉल का कलर है वो येलो कलर का है।

बगल में एक खिड़की खिड़की पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है| यहां पे बहुत सारा मिट्टी पड़ी हुई है कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए हैं।

औरो एक घर बन रहा है यहां पे कुछ लकड़ियां भी पड़ी हैं और यहाँ पे छोटी-छोटी य पेड़ भी है घास भी है।

और कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कीचड़ है।

देखिये आपको एक रबड़ जाती हुईं दिखाई दे रही होगी व्हाइट कलर की यहाँ पे छोटी-छोटी घास हैं| यहाँ पे साइड - साइड में कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

यहां पर देखिए आपको एक घड़ा-सा दिखाई दे रहा है| देखिए घर की पूरी क-अ-जो घर का कलर है वाइट कलर का है| घर के बाहर कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहा है।

कार खड़ी है और यहां पे बहुत सारे बाइक भी हैं।

हरा कलर है सब फ्रंट का वो ग्री --

पर देखिए आपको बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ पे देखिये खंबा लगा हुआ है खंबा में देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है।

और यहां पर देखिए आपको अ ल राइट हैंड साइड में आपको पेड़ दिखाई पड़ेंगे बहुत बड़े-बड़े यहां पे बहुत सारी कार है बहुत सारी बाइक है।

और टेबल के प्लेट रखा हुआ है| यहां पे देखिए फैन लगे हुए हैं देखने में बड़े सुन्दर लग रहे हैं| यहां पे देखिए दो झंडे के दो झंडे लगे हुए हैं।

यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी कार दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी बाइक दिखाई दे रही होंगी कुछ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

पानी की टंकी भी रखी हुई हैं यहाँ पे जो जमीन है वो थोड़ी ग्रे और रेड कलर की है।

देखिए आपको छोटे-छोटे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं और देखिए एक घर ऐसा बना हुआ है और देखिए इसका जो फ्रंट है वो रेड कलर का है।